देखने में बहोत सुंदरता है ज्यादा भीड़ भड़का का हुआ है।

बहुत सारी मिट्टी की दो रुट है यहां पर--

और ये गाड़ियां भी रात को किसी टाइम भी काम आ सकती हैं।